यहाँ कोई फंक्शन होता हुआ दिख रहा है जहां पे कारपेट लगी हुई है और चेयरे रखी हुई है एक आ--

यहाँ एक प्रोग्राम होते हुए दिख रहा है यहाँ पे एक महिला डास कर रही है।

यहाँ एक घर दिख रहा है जहाँ पे एक आदमी की टांग दिख रही है आदमी की टांग पे कुछ पटियाँ दिख रही हैं साथ ही उसने एक मोजे पहन रखे हैं।